लोहे का गेट दिख रहा है टेंट लगा दिख रहा है रेड कलर का पर्दा लग दिख रहा है और व्हाईट कलर दिख रहा है पेड़-पौधे दिख रहे है लोग दिख --

ग्राउन्ड दिख रहा है ये सड़क दिख रही है पेड़ पौधे दिख रहे है रेड कलर की मिट्टी दिख रही है पत्थर पड़े हुए दिख रहे है पते पड़े हुए दिख रहे है कचड़ा पड़ा हुआ दिख रहा है पेड़ दिख रहे है व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है बोर्ड लगा हुआ दिख रहा ह।

एक टेबल दिख रही है उसपे ये समान रखा हुआ दिख रहा है छेद दिख रहा है बॉटल में रस्सी की डिजाइन बनी हुई दिख रही है टेबल दिख रही हैं।

घास दिख रही है पेड़ - पौधे दिख रहे है व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है इसमें ऊपर पर्पल कलर पुता हुआ --